और कुछ बहुत सारे लोग हैं जो यहां पे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक जयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की एक बड़ी सी बनी हुई बिल्डिंग है।

यहां पे दो कारे भी लाइन से खड़ी हुई लगी दिखाई दे रही है ये झंडो में अलग अलग कलर बने हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे फूलों के द्वारा भी सजावट करी हुई दिखाई दे रही है।

ये एक किसी ऐसी जगह की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी पुरानी बिल्डिंगे बनी हुई नजर आ रही है।

ये किसी पूल की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे सामने की ओर बहुत सारे लॉकर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये यहां पर बहोत सारे पैसेंजर्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहां पे बहोत सारे लोग हैं जो भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये पूरा चबूतरा ही गिला लगा--

ये एक स्कूल की फ़ोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स खडे हुए नज़र आ रहे है।